और उन्हें दुकानों दुकानों तक बेचा जाता है यह पोल्ट्री फार्म बहुत ही बड़ा है यहाँ पे बहुत सारे मुर्गे तैयार किये जाते हैं ।

यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं।